बड़ा सा मैदान है और मैदान मैं दो ऑटो जो है वो पार्क किये गए हैऔर उस में एक जो ऑटो रिकसा वाला अंकल है वो बेठा हुआ है और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है और उसके सामने एक डबा सा पेड़ है ।

कुछ लड़के जो हैं छोटे छोटे लड़के वो बैठे हुए हैं वो जो कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं और कुछ उसको जो काम हैं वो कर रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी सी दिवार हैं। जिसके --

यहाँ पे जो हैं के जो बेकरी नजर आ रही हैं और बेकरी मई जो होते है वह पे बोहोत सरे प्रकार के खाने के सामान जो है रखे गए है।

मछली उसकी बाजार है जहाँ पर बहुत सारी मछलीया रखी गई है और बहुत सारे लोगों की भीड़ है कुछ मछली की शॉप में एक आदमी बैठा हुआ है कुछ महिलाये उस मछलियों को देख रही है।

यहाँ पर जो है बड़ी सी शॉप है जो की माछीलयों से भरी हुई है यहाँ पे बड़े साइज़ की मछलीया है छोटे साइज़ की मछलीया है और उसके पीछे एक आदमी जो है चीर पे बैठा हुआ है आगे की और देख रहा है।